कुछ दरवाजे दिखाई दे रहे हैं लाइट दिखाई दे रही है पंखा लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

कुछ बोर्ड लगे हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ सामान डला हुआ दिखाई दे रहा है।

कुछ आदमी खड़े हुए दिखाई दे रही है साइकले दिखाई दे रही हैं और कुछ कैन दिखाई दे रही है साइकल वाले--

कुछ बलफ लगाये लगे दिखाई दे रहे हैं कुछ खिड़की रखी हुई दिखाई दे रही है कुछ मार्शलें खड़ी हुई दिखाई दे रही है कुछ टेबल रखी हुई दिखाई दे रही है।

पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है कुछ मंदिर दिखाई दे रहा है कुछ टीन लगी हुई दिखाई दे रही है कुछ गाड़ी खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

फूल लगाए हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ गमले रखी हुई दिखाई दे रहे हैं कुछ आदमी दिखाई दे रहा है कुछ पर्दा लगे हुए दिखाई दे रहा है कुछ आदमी आते हुए दिखाई दे रहा है।

दवाइयां दिखाई दे रही हैं कुछ मेडिकल दिखाई दे रही हैं।

कुछ मार्शले दिख रही है कुछ पिकअप दिख रहे हैं पुल दिख रहा है।

कुछ आदमी बैठे हुए जाते हुए दिख रहा है।